यह एक होटल कि तस्वीर हैं जिस होटल का नाम होटल स्वराज

यहाँ पे एक दो आदमी भी देखने को मिल जाएगा।